रोड के किनारे-किनारे कुछ हरे-हरे पत्ते भी लगे हुए हैं।

इसीलिए इसमें कोई है नहीं सामने एक बोर्ड पे भूत बांग्ला भी लिखा हुआ है जहां पे लोगो को लुभाने के लिए लोगो को डराने के लिए तरह तरह की अअअ फोटो या चित्रकारी लगा हुआ होगा।

इसमें खादिम्स का भी शोरूम है एस.बी.आई. का एस.बी.आई. का ब्रांच भी दिख रहा है जिसपे एस.बी.आई. का बोर्ड लगा हुआ है इसके ठीक बाहर कुछ कारें खड़ी है और कुछ ऑटो सड़क से गुजर रहे है।

किसी मोहल्ले का दृस्य जहाँ पे चारों तरफ मकाने हैं और बीच में एक छोटी एक बड़ा सा मैदान मैदान है जिसकी सड़क में एक महिला और एक व्यक्ति साईकिल से गुजर रहा है। एक पेड़ एकदम हरे हैं दूसरा पेड़ एकदम सूखा हुआ है साथ ही में कुछ मोटर सइकिल भी यहाँ पे खड़े हुए हैं |

एक गांव का दृश्य जहां पे एक बड़ा-सा पेड़ है उसके ठीक बगल में कुछ छोटी-छोटी झुगी झोपड़ियां भी है दो छोटे-छोटे झुगी झोपड़ियां भी है ये उस पेड़ पे एक बालक --

एक बड़ा-सा पार्क इसी पार्क के बीच में बड़ा-सा इक्लेक्ट्रिक का फुव्वारा जो कि जिसके ठीक बीच में लाइट जल रही हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।

वो मास्क लगाया हुआ है और वो सुरक्षा का काफी अच्छा प्रावधान --